चित्र में एक घर दिख रहा है जिसके बाहर रॉड़ो का शेड डल रहा है वेल्डिंग चल रही है काम चल रहा है लोग चश्मा लगाए हुए है।

तबेला दिख रहा है घास दिख रहे है।

लाइटें दिख रही है टावर के पीछे एक घर दिख रहा है उसपे टंकी रखी हुई है आसमान दिख रहा है।